इन पर कुछ कुर्सिया लगी हुई दिखाई दे रही है कुर्सियों पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहे है जिन के पास अलग-अलग बुके रखे हुए --

मकान कच्चे दिखाई दे रहा है | एक ट्रेक्टर ट्रॉली भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है | ऊपर आसमान भी रंगीन कलर में दिखाई दे रहा है |

इस हॉल मे बहुत सारी अलमारियाँ बालकनीयां लगी हुई दिखाई दे रही है बालकनीयो पर बहुत सारे इव --

की रेलगाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है रेल के पास बहुत सारी पटरियां दिखाई दे रही है पटरियों पर इधर-उधर लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे है एक साइड में एक ट्रैन और खड़ी हुई दिखाई दे रही है और--

चलती हुई दिखाई दे रहे है बस में चढ़ते उतरते दिखाई दे रहे है ऊपर आसमान सफेद कलर का दिखाई दे रहा है कुछ पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है।

इसमे नीचे दरवाजे दिखाई दे रहे हैं कुछ स्कूल की लगी हुई दिखाई दे रहा है कुछ ऐसे बैलून्स भी लगे हुए दिखाई दे रहे है और सत --

एक स्कूल लगता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमे बहुत सारी बेन्चे रखी हुई दिखाई दे रही है टेबल रखी दिखाई दे रही है और टैबलो पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहे है एक बच्चा --